यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग बहुत बड़ा है इस बिल्डिंग में अनेक से कमरे हैं अनेक सी खिडकियाँ है यह बिल्डिंग में बहुत ही सुन्दर रंग से पेंट किआ गया है ।

यह एक सड़क है यह सड़क पर एक टोटो खड़ी है यह टोटो के दोनों किनारे दो आदमी खड़े हैं यह आदमी अपने मुह में --

बिल्डिंग में आदमी नहीं रह रहे हैं यह बिल्डिंग अभी बन रही है यह बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे आदमी यहाँ बिल्डिंग देखने के लिए आए हुए हैं।